पूरा यहां पर लाइट्स लगी हुईं हैं और बस इसके साइड में ये बाइक भी खड़ी हुईं हैं और आगे एक वॉचमैन भी दिखाई दे रहा हैं।

और इसमें ये बहुत सारा कबाड़ है वो रखा हुआ है।

और ये एक बहोत ही ऊंची हवेली हैं।

और ये एक मशीन है जिसे खेतों में गेहूं है वो उनकी बोई करते हैं।